डेन है गार्डन मे सीमेंट वाली छोटी छोटी एक एक फूट की टाइल्स लगे हुए है।

मैदान है मैदान मे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक स्कूल दिखाई दे रहा है। जिसमे एक सीढी लगी हुई दिखाई दे रही है एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

और मैदान दिखाई दे रहा है मैदान मे काफी सारी घास दिखाई दे रही हैं पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ हरी--

एक रूम है रूम मे सामने एक अलमारी दिखाई दे रही है अलमारी एक तरफ से बंद है बीच मई काच दिखाई दे रही है।

हॉटेल है इसमे ऊपर झूमर लगा हुआ है नीचे कुछ हाँड़ वॉश और फोन पे का क्यू आर कोड़ लगा हुआ है।

साबुन दिखाई दे रहे है तेल के डब्बे दिखाई दे रहे है कुछ एरियल के डब्बे दिखाई दे रहे है काफी सारे पेकेट दिखाई दे रहे है।

एक दुकान है जिसमे काच की बनी हुई है इसमे एक लंच बॉक्स रखा हुआ है एक एलईडी लाईट लगी हुई है दीवार मे एक ईश अ इ स्टेबिलायझर रखा हुआ है।

बादल हारा पीला और ऑरेंज दिखाई दे रहा है नदी का पनि बिलकुल काला दिखाई दे रहा है।

येल्लो रंग की टीशर्ट पेहनी हात मे घड़ी पेहनी और अंदर केजीफ का पोस्टर लगा हुआ है काच दिखाई दे रहा है और सीडीयोमे पत्थ --

कोल्ड्रींगस रखी हुई है कुछ पेप्सी रखी हुई है काफी सारी सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है एक पंखा लगा हुवा हैं।

एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे काफी सारी झाडिया दिखाई दे रही है पहाड़ दिखाई दे रहा है पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पत्तिया दिखाई दे रही है।